ये एक बड़ा सा हॉल है जहां पे बहोत सारी बुक्स रखी हुई है और बहोत सारे लोग हैं यहां पे आपस में बातें कर रहे हैं शायद बुक --

जिसको ढ़केल के लेके जा सकते हैं एक रास्ता हैं।

अ अ होल्डिंग के बे अ दुसरे साइड पे घर है।

कार्स बैटरीज बुक्स कॉपी पेन --

शायद कोई कॉलेज का ग्राउंड है जहां पे कुछ फंक्शन चल रहा है।

साड़ियां पहने हैं लहंगे पहने हैं मल्टी कलर ड्रेस पहने हैं।

व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हूं और उसमें रेड कलर के फूल का डॉट्स है और--

जो सामने खड़ी हुई है जो ब्लर है बहोत ज्यादा उसने रिपोर्ट्स पकड़े हुए हैं सामने रिसेप्शन एरिया दिख रहा--

यहां पे बच्चों का समान है जहां पे बच्चों को बैठकर खिलाने का--